यह दृश्य एक पेट्रोल पंप का है।

यह द्रिश एक--

टट के किनारे का है जहाँ पर टट के किनारे एक है --

कुछ बच्चें डांस करते हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ सफ़ेद मालाएँ हैं और कुछ संतरी मालाएँ हैं।